जमीन छोटे छोटे सुंदर घास से भरा हुआ है।

दूर प्ले स्टेशन जैसा भी कुछ दिख रहा है।

दोनों तरफ हरे रंग के गमले में पौधे लगे हुए हैं।

सामने बहुत सारे सफेद रंग के बेंच लगे हैं।

तस्वीर में सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में काले रंग का टी शर्ट पहने एक व्यक्ति खड़ा है।

इसके आगे कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं।

तथा साथ में नीचे भी दीवार पर कुछ लिखा है।

तस्वीर में बड़ी गोल सफेद रंग का पिलर खड़ा दिख रहा है।

इसके ईमारत का रंग लाल तथा भूरा है।

तस्वीर में बहुत सारे लोहे की समान दिख रही है।

अलग-अलग प्रकार के वस्तु रखी हुईं हैं।